जो इनको खतरों से बचाती है इनकी ढाल ऊपर की छाल है जो बहुत ही मजबूत होती है।

इसमें तीन-चार लोग खड़े हो कर नहा रहे हैं।

ये सब नहा रहे हैं मजे कर रहे हैं नदी में नदी का लुफ्त उठा रहे हैं नदी में नहाना चाहिये।

बगल मे अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है इधर भी मूर्ति एक लगी है भगवान बुद्ध की और दो तीन लोग बैठे हुए हैं।

बहुत ही प्यार बहुत ही अद्भुत बहुत ही शानदार जितना मैं कहूँ उतना कम है।

देखने में बहुत ही मनमोहक लग रहा है ये पार्क ।

नदी का नजारा बहुत ही शानदार लग रहा है बहुत ही प्यारी नदी लग रही है।

बहुत ही अच्छी सुविधा थी पुराने जमाने की अब तो टेलफानिक वार्ता हो गया है हम टेलएफोन से अपना हर एक चीज करते हैं।

यह एक योगा सेंटर है यहाँ पे लोग आ के अपने शरीर को मोटापा काम करने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बूढ़े जवान बच्चे सभी आते हैं।

झूले पे पटरा लगया गया है जिसको सिकड़ से बनाया गया ताकि ये टूटे ना ये बच्चा पूरा फुल इन्जॉय कर रहा इस झूले का पूरा आनंद उठा रहा है।

दाढ़ियों बनाने के लिए सेट कराते हैं जिससे हमारा लुक बहुत ही अच्छा लगे जैसा हम देख सकते हैं इस लड़के ने अपने मन पसंद से अपने बाल में डिजाइन बनाया है।

इस लाल कलर की बिल्डिंग पे भी कमेरे अलर्ट हैं।

जो इस नदी का पानी का इन्जॉय कर रहे हैं नाव के साथ बैठ के नाव भी मल्लाह चल रहा है।

मंदिर जहाँ पे दर्शनार्थियों का बहुत ही भीड़ लगा हैं पीछे एक पवन चक्की चल रही है।

काफी पुराना मंदिर लग रहा है जहां के दर्शन करने के लिए काफी मात्रा मे लोग द्वार से अंदर जा रहे हैं।